एक लड़का अंदर की साइट पे जा रहा है। जो पीले रंग की टी शर्ट पहिना हुआ। भूरी मिट्टी है। एक कार है जो कि लाल रंग की है। सफेद नीला आसमान है। खंभे गड़े हुए हैं पीछे साइट पे एक पेड़ है हरी पत्ति हैं।

सामने एक बैंक है जो अभी बंद है शटर लगी हुई है कत्थई रंग की एक साइकल रखा गया है |

सामने के साइट पे कुछ लड़के जो चावल पर लेटे हुए हैं एक लड़का जो बैठा हुआ है अ एक लड़का जो लेटा उसकी पेंट ऐ फटी हुई है।

औरत बैठी ये नीले रंग के और गुलाबी रंग की ठाट बिछी है लाल रंग की बगल में पीले रंग की है।

बहोत सारे लोग खड़े हैं हरे रंग के सफ़ेद रंग के कपडे पहने हुए हैं। दीवाल सफ़ेद रंग की हैं। नीचे ने चप्पल पहने हुए हैं और एक सफेद टुबलिइट जल रही है।

भूरी रंग की मिट्टी है आसमान है सफेद नीला आसमान है। सामने एक घर बना है जो पीले सफेद रंग की है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं हरी पत्ती है।